और लाइट से सजाया गया है। यहाँ पे बोहोत सारी कुर्सी लगे हुए हे । यहाँ पे बोहोत भीड़ लगी हुई है। लोग आये हुए हैं । ओफिस का उद्घाटन में। यहाँ पे --

बडा़ सा पहाड़ है। इस पहाड़ के बीचों-बीच सीढ़ी तरह सीटी सीढ़ी की तरह कटिंग किया गया है। एं इसी से लोग --

कपड़े की दुकान है। इस कपडे की दुकान में बोहोत तरह-तरह के कपडे़ रखे हुए यहां पे एक पुतला में कुर्ती पहनाया गया है।

स्कूल है। इस स्कूल में बोहोत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बोहोत सारे बाहर में गाड़ी स्कूटी खड़ा है।

एक सखी कोस्टमेटिक एंड फैशन एसेसरीज दुकान है। यहां पे सभी प्रकार के फैंसी ज्वेलरी ब्रेन्डेड पर्स कोस्टमेटिक --

वहाँ पर लोगो की भीड़ लगी हुइ है। लोग पूजा करने के लिए आये हुए हैं। वहाँ पे बोहोत से आदमी बाहर मे हाथ जोड़े खड़े हैं।